और यहाँ आस पास सभी दुकान पे लोग खड़े हैं ।

ये बहुत अच्छा होटल दिखाई दे रहा है ये दो मंजिला है शीशा लगा हुआ है यहाँ सामने एक हॉल है सर्प दिखाई दे रहा है ।

उसका नाम पी.वी.आर. नहीं पी.वी.आर एक मॉल होता हे । जिसके अंदर काफी सारे थियेटर होते हैदो तिन --

ये देख सकते हैं ब्लू बोर्ड भी लगा है जूम करने पर नहीं दिखाई दे रहा है क्या लिखा है ।

यहाँ पर बहुत है यहाँ पूजा वगैरा माता रानी के बहुत श्रद्धालु है । यहां सजावट बहुत डेकोरेशन के फूल है ।

और यहाँ पे हैं पत्थर